ये खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं साइड में मॉल जैसे बने हुए हैं बड़ी बड़ी ईमारते--

वॉक करती नजर आ रही है आसपास हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं मोर बहुत ही सुंदर लग रहा है।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

झूला झूलते नजर आ रहे हैं पीछे कुछ हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं साइड में भी झूले लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक फैक्ट्री में कार्य होता दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में गुरुद्वारे जैसाथ नजर आ रहा है सफेद रंग--

इस चित्र में एक एनिमल टैटू दिखाई दे रहा है सामने इसका बोर्ड लगा हुआ है कांच की खिड़कियाँ हैं।

बीच में एक थोड़ी में साया थोड़े में धूप दिखाई दे रही है।

जिससे ये नजारा बहुत ही सुंदर लग रहा है।

कन्याएं और पुरुष नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं स्टेज परफॉर्मेंस चल रही है।

सामने की तरफ भी बहोत सुंदर लाइट लगी हुई है।

ये चित्र रेलवे स्टेशन का है साइड में --

बहुत ही सुंदर लग रही है ऊपर की तरफ भी बड़े-बड़े --

खड़ी नजर आ रही हैै एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा--

हरी-हरी घास नजर आ रही है हरे भरे पेड़ों से यह बहुत सुंदर लग रहा है।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

इस चित्र में एक बड़ा गेट दिखाई दे रहा है आसपास दुकानें लगी हुई हैं।

ए टू जेड अमूल की शॉप नजर आ रही है इसमें डेरी प्रोडक्ट्स लिखे दिख रहे हैं।

पीछे की तरफ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में अपना आइसक्रीम पार्लर दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति एक्टिवा से जाता दिखाई दे रहा --

बहोत सारे बॉक्सेस भी रख दिखाई दे रहे--

कुछ व्यक्ति अंदर डी_जे के पास खड़े हुए हैं।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

सामने ऊपर की तरफ बहुत सारी--

काउंटर दिखाई दे रहा है सामने बहोत सारी किताबें--

इस चित्र में एक सड़क दिखाई दे रहीं हैं।

इस चित्र में एक मॉल दिखाई दे रहा है यहां पर जरूरत का--

हॉल या फिर हॉस्पिटल का एरिया दिखाई दे रहा है।

सब एक दूसरे को देखते कुछ कार्य करते नजर आ रहे हैं।

कुछ व्यक्ति साइकिल पर आते-जाते नजर आ रहे हैं।

घांस बहुत अच्छी नजर आ रही है।

सामने बोर्ड भी लगा नजर आ रहा है।